और ऊपर कलर किया हुआ है बिना कलर के तो अच्छा नहीं लगता है और नीचे फर्श दिखाई दे रहा है चिमकता हुआ --

पशु दिखाई दे रहा है पता नहीं ये कौन सा पशु है मुझे लगता है ये हिरण है और नीचे ये मिट्टी दिखाई दे रही है उसके पीछे एक --

और एक अ महिला दिखाई दे रही है और टेबल पर एक बोटल पड़ी है।

यहां पे मुझे कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं यह मुझे लाइब्रेरी दिखाई दे रही है यहां पे मुझे --

और एक लड़की की फोटो लगाई हुई है और लाइटें भी जस रही है यहां पे --

दीवार भी बनाई हुई है और दूर दूर तक पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं और कुत्ता का रंग पीला है।

यहां एक घर है और घर के बाहर एक लुगाई है जो अपनी बच्ची को पकड़े हुए हैं।

और एक गेट दिखाई दे रही है उसका एक पल्ला दिखाई दे रहा है पूरा पल्ला दिखाई नहीं दे --

यहां पे तरह तरह के पर्स लेडिस पर्स रखे हुए हैं ऊपर लाइटें जल रही है।

सामने में बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं और एक आदमी के गुद्धि आधी कटी हुई है।

यह एक चप्पलें और जूतों का दुकान है यहां पे दो टेबलें नीचे रखी हुई हैं बैठने के लिए।